ये क्लास में बहुत सारा लड़की लड़का लोग बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारा बच्चे बच्चा लोग का कपड़ा नजर आ रहा है।

यहां में एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

पेड़ भी नजर आ रहे है।

और दु ठो घर भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक से बना वाला अलमारी भी नजर आ रहा है।

और ऊपर में एक बैनर में मोती महल डीलक्स लिखा हुआ एक ठो दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

उसका ऊपर में बहुत सारा फैन नजर आ रहा है।

में एक दुकान नजर आ रहा है।

का फेस ब्लर किया गया है।

और उसका ऊपर में एक ठो स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा--

इसमें बहोत सारा नया बोलेरा दिखाई दे रहा है।